जो की मैदान में बहुत सारी खिड़ाली खिलाड़ी अलग-अलग कपड़ों में खड़े--

उसके आधे हिस्से को काट कर निकाल चुके हैं वह आधे को काट रहे हैं।